और लोग भी दिख रहें हैं और काउंटर भी दिख रहा हैं कांटा भी दिख रहा हैं और कार भी दिख रहीं हैं।

लड़के कुर्सी पे बैठे हैं और एक आदमी स्पीच दे रहा है माइक में।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

और पेड़ भी दिख रहे है और फुल भी दिख रही है बाइक भी खड़ी है कुछ --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

हॉल में कुर्सियां दिख रही है और सीलिंग फैन भी लगे हैं पर्दे भी लगे हैं और स्टेज में पीछे परदे भी लगे हैं।